और बहुत ही ख़ूबसूरत साईकिल यहा पे रेहता है।

और यहाँ का जो सुंदरता है बहुत ही खुबसूरत है। हिंदू के लिए मंदिर जो है बहुत पवित्र स्थल माना गया है।